एक बस का कलर सफ़ेद है एक बस का कलर हरा और एक का सफ़ेद और एक का फिरोज़ी --

और बैलून से रेड कलर के बैलून से सजाया गया है और एक केक दिखाई दे रहा है जोकि येलो और फिरोज़ी कलर का है।

बोहोत सारे बॉक्स पेन अ रैसर फेविकिवीक वागेरा टंगे हुए हैं। अंदर --

सड़क पर कहीं गढ़े कहीं सड़क गीली है। चारो तरफ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं ऊपर खुला आ --